इस चित्र में हमें एक मार्किट जैसी खुली हुई न्यू शॉप की दुकान दिखाई दे रही है।

और एक बरगद का पेड़ भी नज़र आ रहा है और कुछ घर बने हुए हैं वो भी नज़र आ रहे हैं और एक लड़का है जो बरगद के पेड़ के निचे बैठा हुआ है।

एक मछली की पुंछ आधी कटी हुई नज़र आ रही है और इनको यहाँ लाल कपड़ो में बिछा कर रखा गया है।